और रस्ता कटा हुआ नजर आ रहा है आसमान नजर आ रहा है और पानी नजर आ रहा है थोड़ा-सा और झाड़ है छपरी बनी हुई --

ओटला है ब्लू कलर के दरवाजे है एक सीढ़ी रखी हुई है एक साइकिल भी रखी हुई है रोड जा रहा है।

यहां पर एक ब्लू गेट दिख रहा है सीलिंग दिख रही है शॉप में कांच की दिख रही है ऊपर की तरफ एक बोर्ड है एक सीढ़ी जा रही है।

अ घास नज़र आ रहा है पा ये पानी का एक किनारा है पानी है पेड़-पौधे है आसमान नज़र आ रहा है चारो तरफ पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे हैं।

पीछे की तरफ कुछ दीवाल नजर आ रही है गमले नजर आ रहे हैं और रस्ता नजर आ रहा है पुतले लगे हुए हैं झाड़ है।

ऊपर साफ सफाई है मार्बल लगा हुआ है ऊपर की तरफ पी.ओ.पी. में भी कुछ डिजाइंस की गई है।

ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ है ऊपर सीलिंग है फैन है।